इसे बैनर लगाने के लिए दो लोहे के लिए गए हैं उसपे बैनर चिपका के लगाए गए --

आप इसके अंदर जा के पेट्रोल भरा सकते हो अगर आपके गाड़ी में डीजल है तो डीजल भरवा सकते हो यहाँ पर लाइट बहुत सारी लाइट लगी है अगर लाइट जलती है इसकी दिन के समय में जरूरत नहीं है रात के समय लाइट की जरूरत है इसमें चारों तरफ लाइट दिया गया --

यह एक व्यक्ति है जो पानी पे पत्थर निकला है उसपे बैठा हुआ और आसमान की ओर देख रहा है यहाँ से बहुत दूर पहाड़ भी है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है‌ देखने में।

इसे देख के लगता है ये बहुत ही मेहनत कर रही है एक एक जीन्स पहनी है आप जिस प्रकार से कर रही है बहुत ही मेहनत से किया इसे करने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है डेली प्रैक्टिस करनी होती है डेली करने के बाद ये रिजल्ट आता है इसका पीछे का जो --